बड़े से पानी का तालाब है जिसमे एक लकड़ी के नौका पर एक बूढ़ा व्यक्ति और एक आदमी बैठा हुआ है बूढ़ा व्यक्ति--

आसपास पहाड़ बने हुए है जो की हरे रंग के है और छोटे - बड़े है आसामान सफेद --

बड़े से तालाब में दो भैसे वहाँ पर खड़ी है जो की काले रंग की है उनमे पीले रंग की रस्सी लगायी हुई है आस-पास हरियाली है।

आसमान नीले रंग का है लाइटिंग का प्रबंध किया हुआ है जिनमें --

सड़क के किनारे दो मंजिला इमारत बनी हुई है जिसमे कांच की खिड़कियां लगायी हुई है।

बैली बैडमिंटन खेल रहा है बैडमिंटन के लिये दो क्राउड बने हुए है।

हरे रंग की दिवार बनी हुई है जो की आधी है।

मुझ पर बहुत सारे बड़े व्यक्ति बूढ़े बैठा हुए है लड़कियों ने साड़िया पहनी हुई है कथा कलर की लिए जिसमे--

नाइ हुई है जो की हरे रंग की है और उसमे लाल रंग किया हुआ है बोहोत रंग -बिरंगे किनारे में लाए हुए है इसमें पीला लाल। --

पानी चारो तरफ हरियाली है पत्तीयों का रंग हरा है आसमान नीले रंग का है जो की बहोत ही खूबसूरत लग रहा है चट्टाने--

कच्ची भूमि पर चारों तरफ बकरियाँ है जो की सफ़ेद भूरे रंग की है जिनमे आधी सफ़ेद और भूरे रंग की दो है।